जिसमें बहुत सारी बजरी लुंगियाँ रखा हुआ है और पीछे की साइड में कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और इस आकृति में--

और पीछे की ओर विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं जो--

और अंदर की ओर एक कंप्यूटर डेस्क एवं एक चारपाई रखी हुई है।

लगे हुए हैं और पीछे की ओर एक ब्लैक कलर की स्कूटी खड़ी है और उसके पीछे की ओर एक--

तथा यहां पर बहोत मात्रा में रेत--